सामने एक इंजीनियर खड़ा हुआ है जो वाइट कलर की शर्ट पहने हुआ है।

इस इमेज में जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह एक फूलों की दुकान है।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

फूलों के हार पड़े हुए हैं उनमें से कुछ फूल येलो कलर के हैं।

नदी के बीचो बास से एक पुल गया हुआ है। पुल को देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि पुल को स्टील से बनाया गया है।

इस इमेज में एक रूम को दिखाया गया है जिसमें सामने की ओर एक बेड पड़ा हुआ है।

मंदिर बहुत खूबसूरत दिख रहा है मंदिर के फर्श में जो टाइल्स लगी हुई है वह क्रीम कलर की है।

जोकि अपनी यूनिफॉर्म में है बस कंडक्टर एक चश्मा लगाए हुए हैं।

कंडक्टर के ऊपर टिन सेट पड़ा हुआ है जो की लोहे का टिन सेड है।

इस इमेज में जो दिखाया गया है उसमें दो इंसान एक ईरिक्शा के बराबर में खड़े हुए हैं।

इसमें सामने एक ठेला लगा हुआ है जिस पर लिखा है साइ फास्ट फूड कॉर्नर जो की इंग्लिश में लिखा गया है।

और जो येलो कलर से लिखा गया है उसके लेफ्ट में मोदी निवास है।

जो की एक शॉप है इसमें मोदी निवास रेड कलर से हिंदी में लिखा गया है।

इसमें लिखा है ऋषि फुटवेयर जोकि हिंदी में वाइट कलर से लिखा गया है।

ड्रीम्स कार झांसी जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश में कैपिटल लेटर से येलो कलर से लिखा गया है।

इंडिया का झंडा है मंदिर को ऐसा लग रहा है कि राजा महाराजाओं ने बनवाया है।

जोकि एक अस्पताल है जिसका नाम सदर अस्पताल गोपालगंज लिखा हुआ है।

इस इमेज में एक मैरिज लॉन की फोटो को दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे टेंट का उसे किया गया है।

टेंट का कलर बिल्कुल रेड है नीचे जो मैट पड़ी है वो भी रेड कलर की है।

सामने कुछ स्नैक्स के पैकेट भी टंगे हैं जिनमें से कुरकुरा और चिप्स लग रहे हैं।

सामने विंडोज का कलर भी ट्रांस पैरेंट है इनमें कांच लगे हुए है।

जिसमे एक बंदा सामने की ओर ब्लैक कलर का कोट पैंट पहन के फोटो खिंचवा रहा है।

क्योंकि गेहूं बोने वाली मशीन है जिसमें उमेश लिखा हुआ है।

जो की फेडरल बैंक का ए_टी_एम है फेडरल बैंक को इंग्लिश के कैपिटल लेटर में व्हाइट कलर से लिखा गया है।

रोड को सीमेंटेड ईंटों से बनाया गया है रोड पर एक बाइक भी खड़ी हुई है।

रोड के चारों तरफ बाउंड्री की गई है बाउंड्री का कलर वाइट कलर से किया गया है।

जिसको देखकर लग रहा है कि जिम सेंटर का नया नया इनॉग्रेशन हुआ है।